पर कोई न अभी चला रहे हैं।

बहुत अच्छा घर बनाए गए हैं मीटिंग के लिए।

कोई प्रोग्राम रखे गए है बहुत अच्छे नजारे देखने को मिल रहे हैं बहुत अच्छे दिए जला रहे हैं चारो तरफ दीया ही नजर आ रही है।

एक घर भी लग रहा है कोई काम हो रहा है घर में।

यहां काम करने के लिए।

लगता है एच.पी. का पेट्रोल पंप है बाइक से सभी कोई तेल भरा रहा है।